और सामने से दिखाई दे रहा है और यह एक --

कुछ और व्यक्ति भी खड़े हैं और जो की बस में बैठे हैं।

और कई लोग जो कि पेड़ की तरफ जा रहे हैं और ऊपर--

एक दीवार पे बहोत सारी चप्पले टांगी गई है उसके साथ ही बहोत सारी चप्पले--

अ यहां पर अलग अलग तरह की सब्जी रखी हुई है। यह सब्जी की मार्केट है यहां पर --

पक्के और रंग के ब लगाए गए हैं।

यहां बहोत ही बड़ी पार्टी हो रही हैं और सामने एक स्क्रीन लगी हुई हैं जिसपे की--

यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं जोकि अ जहाँ पर टेबल और कुर्शियां भी रखी गयीं हैं।

सामने से ही कुछ लोग जो की बस में चढ़ रहे हैं।

बहोत ही सुंदर सा घर बना हुआ है और साथ में ही--

कुछ लोग यहां पर तस्वीरें खींचा रहे हैं।

हाई कोर्ट की तस्वीर है जो कि दो तीन मंजिल--

अ पड़ा है और यह बहुत ही अच्छा लग रहा है।

जो कि मंदिर के अंदर माथा टेक रहे हैं और उसी के साथ कुछ--

उसी के साथ एक कोका कोला का एक फ्रिज भी लगा हुआ है जिसमें की बहोत सारी कोल्ड ड्रिंक कर रखी हुई हैं उसके ऊपर एक--

मैट पे के ऊपर पानी डाल रहा है और सामने से कुछ लोग जहां पर अन्दर की तरफ आ रहे है और साथ में ही कुछ लोग खड़े है।

अ कर रहे हैं उसके साथ ही एक एल_इ_डी की जोकि दुकान भी है।

मंदिर के अंदर छोटे-छोटे जोकि बहोत ही यहां पर लोग दिए भी जला रहे हैं और खुश होकर बैठे हैं।

कुछ क्यारियां भी खड़ी हैं जहां पर कुछ बीजा हुआ है उसी के साथ एक--

एक थार की एजेंसी तस्वीर जहां पर एक बहोत बड़ी--